ये है एकदम सुपर है देखने में अच्छा लग रहा है ।

लेंस आर लगा हुआ है ये आदमी सो रहा है सब सब पंख चल रहा है सब चीज सुविधा है इसमें बस स्टैंड है ।

जेंट्स है अच्छी बात है देखो ये मन्दिर है झकासी है कोई चीज का प्रोब्लम नही है इसमें मन्दिर में देखने में अच्छे लग रहे है ।

और यह लड़का है और यह है आदमी सब है। लेडीज है जेंट्स है पहाड़ी इलाका है घूमने-फिरने के लिए आए हैं।

अच्छी बात है। हुआ है। टी.वी. लगा हुआ है। बोल आर लगा हुआ है। हरियाली पेड़ आर लगा हुआ है सब पीछे लगा हुआ है। कोई दिक्कत --

कोई आदमी निकाल के जा सकता है आई.कार्ड. रहना चाहिए कोई चीज का प्रोब्लम नहीं सब सुविधा है इसमें ।

आसमान है कोई चीज का यहां सुपर लग रहा है देखने में कोई चीज का दिक्कत नही इसमें फोटो में ।

सब अच्छा-अच्छा लगा हुआ हैकाम हो रहा है ।

बिल्डिंग है खड़ा हुआ है चार-पांच मंजिल तीन चार मंजिल कोई दिक्कत नही है अच्छी बात है बना भी ठीके है ग्रिल लगा हुआ है गेट में ।

सब कुछ है लगा हुआ है ठक।